साफ सफाई का भी बहोत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है।

यहां पास सामने गुप्ता मेडिकल स्टोर्स की शॉप दिखाई दे रही है जिसके बगल में--

जोकि एक अच्छी बात है और यहां पास--

यहां पास वाशिंग मशीन का बहोत सारी रखे हुए हैं।

और यहां बहोत सारे कवर्ड भी रखे हुए--

बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं जोकि--

और यहां पास एक गेट भी लगा हुआ है।